ये देखिए इतने सारे तोते हैं तोते पैरोट पैरोट तो बहुत प्यारे होते हैं ये--

यह एक कॉफी बार है सीधा आधा कॉफी टी बार जैसा कि यहाँ पे देख क रहे हो।

यहाँ देखो कितनी भीड़ है मतलब कॉफी पीने के लिए लोग बेताब है चाय पीने के लिए बेताब है।

काफी बड़ा कॉलेज लग रहा है बगल में आपको पोल दिखाई दे रहा है सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सी चीजे दिखाई दे रही है इसमें-- ।

ये हमने दूर से पिक्चर क्लिक करा है क्योंकि पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहै हैं इसमें भी महाप्रबंधक है।

यह मोबाइल महल है एक्सक्लूसिव ए. सी. एक शोरूम है।

ये गोवा के बीच का है पूरा बीच है सामने आपको बीच में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ है पेड़ है।

सामने पूरा गुंबद बना हुआ है विश्राम बेंच वगैरह लगे हुए है दोनों साइड पे --

मालाएँ से सजी हुई है माला है व्हाइट कलर की गेंदे के फूल सामने आपको एक --

ये ऑडियो लगता है आपको शादी-वादी में शादी हुई पार्टी फंक्शन हुई उसमें हम देख सकते है ब्लैक कलर की पूरी--

पीछे अलमीरा भी वुडन की रखी हुई है यह अभि अभी-अभी किसी ने बनवाया है।